ये दुकान है जिसके अंदर एक गाड़ी खड़ी है जिसका लाल कलर है।

एक बच्चा है जिसने एक छोटा सा बच्चा गोद में ले रखा है।

सर पर एक टोकरी रखी है।

विंडो में पर्दा टंगा हुआ है विंडो के ऊपर एक ए_सी लगा हुआ है।

इन्होंने कुछ ने मास्क लगाया हुआ है।

बेडरूम में गेट है जिन पर परदे लगे हुए हैं।

उसने अपने हाथ में एक पाइप पकड़ा है।

दाल और चने रखे हुए हैं।

सफेद कलर का पाइप पड़ा है।

लोहे की जाली का गेट लगा हुआ है।

पीले कलर के थमले लगे हुए हैं।

और एक कूलर रखा हुआ है। कूलर के सामने एक तौलने का कांटा लगा हुआ है।

और इसके सर पर एख चिमटी लगी हुई--

जिसमें कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो लड़कियां कुछ लड़के हैं।

और दुकानों के सामने ए दो साइकिल खड़ी है।

इस फोटो में एक आयरन मशीन दिखाई गई है।

इस फोटो में एक कॉस्मेटिक की दिकान दुकान दिखाई गई हैं।

नीचे कार का सफेद कलर का बोनेट रखा हुआ है।

साइकिल की तान पकड़ी हुई है।

नीचे सफेद कलर की बिजली की फन्टी दिख रही है।

मुंह पर मास्क लगाया हुआ है।

नर्सरी का चित्रण किया गया है जिसमें बहुत सारे पौधे खड़े हुए हैं।

अलग अलग फूल आ रहे हैं।

कुछ पैकेट्स रखें हुये है।

बोर्ड लगा हुआ है बैनर ।

इस फोटो के अंदर एक अल्ट्रासाउंड की मशीन लगी हुई है।

सामने की तरफ एक बड़ी सी विंडो है।

कुछ बोतल छोटी है बहुत बोतल बड़ी है।

साइड मे एक नीले कलर की पन्नी टंग रही है।

और सामने आसमान का रंग नीला दिख रहा है और कुछ बिजली की तारे दिख रही हैं।

इसमें बहुत सारी रेंजर साइकल खड़ी हुई है।

बाइक दिखाई गई है जिस पर एक आदमी और एक लड़की बैठे हुए हैं।

ने आदमी एक हेलमेट लगाया हुआ है और लड़की ने एक बैग टांगा हुआ है।

कुछ पेड़ खड़े हुए है।

उसके नीचे एक और बोर्ड लगा है जीस पर एशियन पेंट्स भूषण लाल मनोज कुमार गांधी चौक शामली लिखा हुआ--

कुछ बाइक और कुछ मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

सफेद कलर के कपड़े पहने हुए है।